एक भैया गिटार बजा रहे एक भैया गाना गा रहे है इधर।

ये बहुत बड़ी धरन है इधर --

स्कूटी खड़ी है स्कूटी की कलर ब्लेक कलर का है।

खिड़की में कांच लगा हुए है बोर्ड लगा हुआ हैं।

इधर कथक का डांस शुरू है इधर चार लडकियाँ--

आजू बाजु फोटो है ऊपर आजू बाजु गमले लगे --